बड़े और भारी भरकम सामानों का ट्रान्सपोर्ट रेलवे स्टेशन से ही किया जाता है।

मंदिर में हिन्दू धर्म के लोग पूजा अर्चना और अपने मन की शांति के लिए जाते हैं।